और मॉल के द्वार के सामने एक पानी का डिब्बा रखा हुआ है।

और दूसरा अवतार में एक कार है तीसरा अवतार में भी एक कार का फोटो लगा हुआ है।

यह एक हार्डवेयर दुकान का दृश्य है इस दुकान का अंदर का रंग व्हाइट है।

यहां पर बहुत सारे घर बहुत बड़े बड़े घर दिख रहे हैं और यह एक तालाब की तरह--

यह देवघर जिले का बाबा बैजनाथ धाम मंदिर का दृश्य लग रहा है यहां पे बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं।

यहां पर दो व्यक्ति दिख रहे हैं।

यहां पे लाल और पीला कलर की रस्सी दिख रहा है।

यह एक औद्योगिक क्षेत्र का वृहंगम चित्र है।

और इसकी साइड मे एक बहुत बडा घर है।

यह एक जिम का दुकान हैयहां पर बहुत सारे व्यक्ति जिम करने के लिए आए हैं।

यहां पर गालती देवी काजू जंग बैंक अह टेंपो सामने खड़ा हुआ है उसका दृश्य यहां पर लगा हुआ है।

यह एक शादी समारोह का दृश्य है। इस तस्वीर मे एक मंदिर जैसा परवेश द्वार भी दिखाई दे रहा है। इस द्वार को फूलो और रोशनियो से सजाया गया है।

यहाँ का कलर हारा और गोल्डेन रंग का है।

और इस छोटे से घर के अंदर में एक कुर्सी रखा हुआ है और वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हो के टेंपो के पास कुछ देख रहा है।

और यह अव्यक्ति कुछ गुलाबी कलर के जैसे सर्ट पहना हुआ है और गले में एक चेन पहना हुआ है।

मंदिर को रोशनियों से सजाया गया है और इस मंदिर का रंग सफेद है।

यहां पर बहुत सारे कॉपी रखे हुए हैं और ऊपर में इंजीनियरिंग इ_सी_इ ऑब्लिक लिखा ई_ई_ई हुआ --

और इस दुकान के सामने दो बेंच रखे हुए हैं।

और सामने एक बहुत बड़ा गेट है और उसके ऊपर एक छजा लगा हुआ है और उस छजे मे लाइट लगा हुआ है और सी_सी_टी_वी कैमरा भी।

और उस पूल में कुछ लिखा हुआ है।